पब्लिक बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है रेड कलर का कुछ बैनर वगैरा भी लगा हुआ है और चर्च पे कुछ लिखा भी है।

काउंटर लगे हुए है और बनी हुई है दुकान पे चढ़ने के लिए वगैरा भी अच्छे से सजा हुआ है।

इसका नाम है अमृत बुक डॉट कोम --

जंजीर टाइप कुछ लगी हुई है पास ही में पेड़ खड़े हुए है लम्बे लम्बे।

बाउंड्री करके थोड़ा गड्ढा सा टाइप बना हुआ है तसले पड़े हुए हैं का फावड़े पड़ी हुई है मट्टी खुदी हुई है यहां पे ।

और गेट गेट के बाहर भी गाड़ियां वगैरह खड़ी हुई रोड।

इधर से उधर होने में प्रॉब्लम कर रही है न इधर को कोई जा रहा है न उधर को कोई जा रहा है सारी सवारियां खड़ी हुई है रुक कर।

ये डायरेक्ट एक रोड का सीन यहाँ पे एन ए एच आई करके।

सीलिंग बनी हुई है सफ़ेद पट्टी डली हुई है रोड के ऊपर रोड बहुत चका चक एकदम बढ़िया है।

यहां एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है जहां पर--

यहाँ पर घास पर एक बकरी बैठी हुई है जो काली और सफ़ेद कलर की बकरी है।

उसमे मालाएं टंगी हुई है वाइट और रेड कलर की और उसमे गोल्डन कलर के भी कुछ फूल।

डले हुए हैं मोगरे के फूल शायद लग रहे हैं और --

पेड़ भी है और सामने ये खोका भी रखा हुआ है।

यहाँ पर एक सीन सीन दिखाई दे रहा है शायद ये मैरिज होम का सिन है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे है आसमान नीला और सफ़ेद हो रहा है।

ये मार्केट दिखाई दे रही है जहां पर एक दुकान तो बंद हो चुकी हैउसके ऊपर मकान भी है और--

यह पौधे का कच्चा शीन हैं यहां पर मट्टी लगी हुई हैं और वह पे पानी डालने का स्थान हैं साइड में भी छोटे बड़े काफी सारे पेड़ हैं।

यहाँ पर एक दुकान है जिसमे एक बंदा सफाई कर रहा है और वह पे नीले कलर का डस्टबिन है और एक।

कुछ रखा हुआ है बॉक्स है जिसमे शायद बतख वगैरा या कुछ कैद कर के रखे जाते है।

कोई पंखुड़ी ले रखा है कोई ढोल बजा रहा है इधर से उधर जाना आना कर रहे।